एक बुक शॉप है जिसके अंदर उसने मूर्तियां रखी हुई है मूर्तियों की तस्वीरें रखी हुई और वह अपनी मूर्ति से अपने ।

कुछ लड़के है जो कि नहर में नहा रहे और नहर में नहा के इंजॉय कर रहे हैं और कुछ चीजें ढूढ़ रहे हैं बहुत से लड़ --

पार्क का एक ऐरिया है जिसके अंदर बहुत जादा जो है वो दुरक्‍त बगैरा लगे हुए हैं काफी घना आ ऐरिया है और उसके अंदर एक फेन --

जिसपे अटकी हुई वो सीडी आप देख रहे है

ट्रीयेड फॉर स्‍ट्रील फॉर की दुकान है जिसके अंदर मेज मेज और चेयरस पड़ी हुई हैं लोग वहां पे बैठे जो है वो स्‍ट्रीड --

एक टॉय शॉप है टॉय शॉप टॉय शॉप के अंदर बहुत से खिलौने पड़े हुए हैं और एक शीशे के कैबिनेट के ।

बड़े काफी ज्यादा पौधे लगे हुए हैं और लोग यहाँ पे हरियाली --

दाल ढाबा है जिसके ऊपर काफी ज्यादा जो है मशरूम टीके कबाब वगैरा लोग खा रहे है ।

यह एक मंदिर है जिसके बाहर जो है वो भगवान की काफी तीन-चार मूर्तियां।

एक नहर है नहर के ऊपर पुल बना हुआ है और पुल में से प--

फ्रूट मार्केट है जिसका नाम बॉम्बे सुपर मार्केट है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म।

सेमिनार चल रहा है सेमिनार में जो है बड़ी सी स्क्रीन है जिस पे जो बैठ के लोग हैं वो उसको --

और अभी यहां पे कोई भी चहल कदमी नहीं है कोई भी लोग नहीं है यहां से यहां कोई आ भी नहीं रहा और अभी जा भी ।

तरीखी तरीखी बिल्डिंग है जो कि बिल्‍कुल खंडर हुई पड़ी है और उसके आस-पास जो है थोड़े-बहुत रखत भी लगे हुए हें और--

सब्जी की दुकान है सब्जी की दुकान है जिसके ऊपर कद्दू गो--

और टिंडे और लहसुन अदरक और गाजरे वगैरा काफी चीज जो है पड़ी हुई है और।

में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है यहां पे एक बच्चा भी मौजूद है।

भी ज्यादा फूल मुख्तलिफ रंगों के नीले पीले लाल गुलाबी सारे फूल पड़े हुए है।

उसके अंदर सोफ़े पड़े हुए हैं जिसके बाहर शीशे के दरवाजे ल--

पहाड़ है पहाड़ पे लोग जो है वो ट्रेजर हंटिंग के लिए जा रहे हैं और उसके ऊपर पौधे काफी।